नदी किनारा पर चार-पाँच गो लोग खड़ा है।

ये गाड़ी अल्टो लग रहा है ।

ई फोटो में एक ठो लड़का नाच करते दिखाई दे रहा है।

मांगुर मछली मछली का एक वैरायटी है।

ई एगो साइकिल के दुकान का फोटो है।